नमस्कार जीचेम्पेंट में एडिटिंग मॉलिक्यूल्स के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे परमाणु पर अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स जोड़ना कार्बोनिक एसिड और सल्फूरिक एसिड स्ट्रक्चर बनाना परमाणुओं के समूह पर लोकल चार्ज जोड़ना और रूपांतरित करना हम निम्न भी सीखेंगे एक परमाणु पर लोकल चार्ज जोड़ना और रूपांतरित करना साइक्लिक अणुओं को जोड़ना मोनो साइक्लिक अणुओं को बाई साइक्लिक अणुओं में बदलना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जीचेम्पेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
मैंने एक नयी जीचेम्पेंट एप्लीकेशन खोल ली है
सबसे पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बनायें
कर्रेंट एलिमेंट ड्राप डाउन बटन पर क्लिक करें
सूची से एन सेलेक्ट करें
टूलबॉक्स में एन को देखें
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर एनएच3 दिखता है
कैपिटल ह दबाएं
ह से शुरू होने वाली अवयवों की सूची वाला एक सबमेन्यू प्रदर्शित होता है
सूची में से ह सेलेक्ट करें
एड आ बोंड ओर चंगे थे मल्टीप्लिसिटी ओएफ थे एक्सिस्टिंग ओने टूल पर क्लिक करें नाइट्रोजन परमाणु में तीन बॉन्ड्स बनाने के लिए नाइट्रोजन परमाणु पर बॉन्ड्स को तीन बार क्लिक करें और खींचें
पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बॉन्ड्स की स्थिति निर्धारित करें
नाइट्रोजन परमाणु पर अनबाउंड इलेक्ट्रॉन का एक युग्म जोड़ें
एड एएन इलेक्ट्रॉन पैर टो एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
फिर अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर क्लिक करें
बदलाव देखें
ध्यान दें कि अब अमोनिया के नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स का एक युग्म है
यह युग्म बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है
इलेक्ट्रॉन्स के इस युग्म को लोन पेअर कहते हैं
एक नियत कार्य की तरह फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड का स्ट्रक्चर बनायें फॉस्फोरस परमाणु पर अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स का एक युग्म जोड़ें
अब कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स बनायें
यहाँ कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए स्ट्रक्चर्स हैं
पहले अमोनिया स्ट्रक्चर को एक तरफ स्थानांतरित करें
ऐसा करने के लिए सिलेक्ट ओने ओर मोरे ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
फिर अमोनिया स्ट्रक्चर पर क्लिक करें और इसे एक तरफ खींचें
अब कार्बोनिक एसिड स्ट्रक्चर बनायें
कर्रेंट एलिमेंट ड्राप डाउन एरो बटन पर क्लिक करें
सूची से सी सेलेक्ट करें
एड आ बोंड ओर चंगे थे मल्टीप्लिसिटी ओएफ थे एक्सिस्टिंग ओने टूल पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
तीन बॉन्ड्स की स्थिति को ऐसे निर्धारित करें कि ये उल्टा य बनायें
चौथे बॉन्ड को किसी भी एक बॉन्ड पर इस प्रकार बनायें कि डबल बॉन्ड बने
अब कर्रेंट एलिमेंट ड्राप डाउन एरो बटन पर क्लिक करें
ओ सेलेक्ट करें
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
बॉन्ड्स के पास कर्सर रखें
बॉन्ड्स की तीन स्थितियों पर क्लिक करें
कार्बोनिक एसिड स्ट्रक्चर बन गया है
अब सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर बनायें
कर्रेंट एलिमेंट ड्राप डाउन एरो बटन पर क्लिक करें
एस सेलेक्ट करें
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
h2एस को देखें
अब डिस्प्ले एरिया पर कहीं भी बड़ा ओ दबाएं
ओ और ओएस के साथ एक सबमेन्यू खुलता है
ओ सेलेक्ट करें
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
फिर एड आ बोंड ओर चंगे थे मल्टीप्लिसिटी ओएफ थे एक्सिस्टिंग ओने टूल पर क्लिक करें
प्रॉपर्टी मेन्यू पर बॉन्ड लेंथ की वैल्यू को 200 या उससे ज़्यादा बढ़ाएं
ओह के तीन बॉन्ड्स एस पर बनाने के लिए h2एस पर क्लिक करें
एस के पास एक धनात्मक चार्ज देखें
यह प्रदर्शित होता है क्योंकि सल्फर को 6 वैलेन्सी संतुष्ट करनी है
चौथे बॉन्ड के लिए पहले एस पर क्लिक करें
माउस को छोड़े बिना बॉन्ड को एक तरफ खींचें
अब विपरीत बॉन्ड्स को डबल बॉन्ड्स में बदलें
एड आ बोंड ओर चंगे थे मल्टीप्लिसिटी ओएफ थे एक्सिस्टिंग ओने टूल पर क्लिक करें
फिर स्ट्रक्चर के विपरीत मौजूदा बॉन्ड्स पर क्लिक करें
ध्यान दें कि धनात्मक चार्ज अब नहीं रहा
सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर पूर्ण हो गया है
अब आगे कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर्स पर लोकल चार्ज जोड़ें
लोकल चार्ज प्रदर्शित करने के लिए डिक्रीमेंट थे चार्ज ओएफ एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
कार्बोनिक एसिड स्ट्रक्चर के दो o ह समूहों पर क्लिक करें
देखें कि कार्बोनेट आयन सीओ32 बन गया है
सल्फूरिक एसिड स्ट्रक्चर पर लोकल चार्ज देखने के लिए डिक्रीमेंट थे चार्ज ओएफ एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
सल्फूरिक एसिड के दो विपरीत o ह समूहों पर क्लिक करें
देखें कि सल्फ़ेट आयन सो42 बन गया है
एक नियत कार्य की तरह नाइट्रिक एसिड स्ट्रक्चर बनायें
नाइट्रेट आयन पर लोकल चार्ज प्रदर्शित करें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
अब मैं जल्दी से प्रदर्शित करती हूँ कि परमाणु पर एक लोकल चार्ज कैसे जोड़ते हैं
डिस्प्ले एरिया पर कहीं भी बड़ा एन दबाएं
सबमेन्यू खुलता है इसमें से ना सेलेक्ट करें
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर सोडियम परमाणु प्रदर्शित होता है
इंक्रीमेंट थे चार्ज ओएफ एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
फिर ना पर क्लिक करें
सोडियम परमाणु पर धनात्मक चार्ज देखें
इसी तरह हम परमाणु पर एक ऋणात्मक चार्ज जोड़ते हैं
डिक्रीमेंट थे चार्ज ओएफ एएन अतोम टूल चुनकर ऐसा हो सकता है
अब साइक्लिक अणुओं को बनाना सीखें
इसके लिए हम एक नयी जीचेम्पेंट विंडो खोलेंगे
टूलबार पर क्रिएट आ न्यू फाइल आईकन पर क्लिक करें
निश्चित करें कि सी जो की कार्बन है अवयव की तरह सेलेक्ट किया गया है
यह भी निश्चित करें कि बॉन्ड लेंथ 200 या उससे अधिक हो
टूलबॉक्स में चौथी टूलबार साइकिल टूल है
यहाँ विभिन्न टूल्स हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं
उदाहरण के लिए एड आ थ्री मेंबर्ड साइकिल एड आ फोर मेंबर्ड साइकिल और कुछ अन्य साइकिल टूल्स और फिर एड आ साइकिल टूल
हम एड आ फोर मेंबर्ड साइकिल टूल उपयोग करेंगे
अतः इस पर क्लिक करें
फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
साइकिल के कोनों पर परमाणुओं को जोड़ें
किसी एक कोने पर राइट क्लिक करें
एक सबमेन्यू खुलता है
एटम सेलेक्ट करें और फिर डिस्प्ले सिंबल पर क्लिक करें
इसी तरह सारे कोनों पर परमाणु जोड़ें
प्राप्त स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटेन है
अब मोनो साइक्लिक कम्पाउन्ड को बाई साइक्लिक कम्पाउन्ड में बदलें
एड आ सिक्स मेंबर्ड साइकिल टूल पर क्लिक करें
फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
कर्सर को साइकिल के बॉन्ड पर रखें और फिर से क्लिक करें
बाई साइक्लिक कम्पाउन्ड को देखें
फाइल सेव करने के लिए टूलबार पर सेव थे करेंट फाइल आईकन पर क्लिक करें
सेव एएस डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल का नाम एडिटिंग मौलिक्यूल्स एंटर करें
सेव बटन पर क्लिक करें
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा परमाणु पर अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स जोड़ना कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर्स बनाना
परमाणुओं के समूह पर लोकल चार्ज जोड़ना और रूपांतरित करना
हमने निम्न भी सीखा एक परमाणु पर लोकल चार्ज जोड़ना और रूपांतरित करना
साइक्लिक अणुओं को जोड़ना मोनो साइक्लिक अणुओं को बाई साइक्लिक अणुओं में बदलना
एक नियत कार्य की तरह डिस्प्ले एरिया पर सेवन मेम्बर्ड साइकिल जोड़ें
इसको ट्राई साइक्लिक कम्पाउन्ड में बदलें
इस उर्ल पर उपलब्ध विडिओ देखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद